ये कोई सार्वजनिक स्थान जैसा लग रहा है लग रहा है स्कुल है देखने में बहुत सुन्दर लग रहा है इसमें सात आदमी खड़े हैं ।

प्लेट काला है देखने में बहुत सुन्दर लग रहा है खाने में भी अच्छा लगता --

चल रहा है आसमान भी दिखाई दे रहा है पेड़ भी दिखाई दे रहा है आसमान काला दिखाई दे रहा है।

डॉक्टर जैसा लग रहा है नीचे बहुत सारा सामान --

जो टेबल पर बैठे हुए हैं।

इसमें एक आदमी है जो आदमी टोपी पहने है टी-शर्ट पहने है देखने में --